एक व्यक्ति बाइक से जा रहा है और एक उसके पीछे बैठा हुआ है जिस--

और उसके पीछे साइकिल का टायर दिख रहा है।

और एक बड़ा सा खेत दिख रहा है जिसपे--

और वहां पर एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है।

है और बच्चे एक पे झूला पे बैठे --

और दो बैलून दिख रहे हैं एक लाल दिख रहा है और एक सादा दिख रहा है।

और उसके पीछे रोड दिख रहा है और बहुत सारे--

जिसने साधा कलर का शर्ट और ब्लू चेक चेक --

और एक बड़ा सा समुद्रर दिख रहा है जो--

वहा पर ब्लू कलर का गेट लगाया गया है।

रात का समय दिख रहा है और रोड दिख रहा है और रोड के किनारे--